थोड़ा थोड़ा पेड़ भी दिखा रहा है और यहाँ पर ऊपर बादल दिखाई दे रहा है जो की ब्लैक एन वाइट से कलर मे दिख रहे है यहाँ पर सामने से रोड भी है और यहाँ पे कुछ दुकान लगे है।

यहाँ पे सामने एक समुद्र-सा बना हुआ है जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी नाव है और जिसमें बहुत सारे व्यक्ति बेठे हुए हैं और यहाँ पे दूर-दूर तक बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ भी --

बैठे हुए हैं और ऊपर से ब्रिज बना हुआ है और यहाँ पे ऊपर भी बहोत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं और यहाँ पे बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं जो की ग्रीन कलर के हैं और यहाँ पे नीचे भी कुछ व्यक्ति हैं ।